यह एक चबूतरा दिखाई दे रहा है जिसपे एक मूर्ति नजर आ रही है जो कि लाल कलर की दिखाई दे रही है और चबूतरे के पीछे ब्लू कलर के कुछ खम्भे दिखाई दे रहे है नीचे घास दिखाई दे रही है कुछ गोल जमीन भी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक गैलरी दिखाई दे रही है। कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं जो कि काली और क्रीम कलर की दिखाई दे रही है। कुछ लोग नजर आ रहे --

यहाँ बहुत-सी साइकिलें दिखाई दे रही हैं जो कि लाल नीली इत्यादि कलर की दिखाई दे रही हैं।

एक बाल्टी दिखाई दे रही है गाड़ी दिखाई दे रही है और साइकिल भी दिखाई दे रही है पंखे दिखाई दे --